ये दृश्य में कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में दो टेबल लगे हुए हैं काले रंग के उन दोनों के ऊपर एक एक लैपटॉप रखा हुआ है।

सामने के तरफ रोड से और छपरा से बने हुए चार छाते दिखाई दे रहे हैं।

सामने के तरफ दिवाल दिखाई दे रहा है दिवाल में ऑरेंज रंग से और ग्रीन रंग से पेंट किया गया है।

उसकी दीवार के नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं इसमें चार स्टूल रखे हुए हैं और उन पर भगवान जी की आकृतियां बनी हुई हैं सोने रंग की।

एक बोरा उजले रंग का बोरा रखा हुआ है नीचे के सामने की तरफ एक हरे रंग की हमें लकड़ी दिखाई दे रही है।

जे_सी_बी के थोड़ा सा आगे दो बड़े बड़े गोडाउन दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है भवन के ऊपर एक बोर्ड बना हुआ है इसपे लिखा हुआ है लातेहार--

यहाँ पे सीढ़ियां ही बनी हुई है ऊपर के तरफ कुछ औरत बैठे हुए दिखाई दे रहे --

बड़ा सा पेड़ के बगल में सीढ़ी है उस सीढ़ी पे कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कच्चे रास्ते के ऊपर पाइप दो पाइप लगी हुई है।

सामने की तरफ एक छोटा सा स्कूल भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे बच्चे अपने अपने स्लाइडर पर मस्ती कर रहे हैं।

इस दृश्य में एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में दो पिंजरे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिंजरे में दो बच्चे कुत्ते के बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक कुत्ता का बच्चा भूरे रंग का तो एक उजले रंग का है।

सामने की तरफ हमें उजले रंग की दीवार दिखाई दे रही है।

बगल में एक लोहे का गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है होंडा ।

सामने की तरफ हमें शीशे से बना हुआ गेट दिखाई दे रहा है और दो खिड़कियां दिखाई दे रही है।

उसके आगे एक बड़ा सा पाइप लगा हुआ है जो ऊपर से लेके नीचे तक गया है।

इस दृश्य में कमरा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ एक उजले रंग की दीवाल दिखाई दे रही है नीचे की तरफ दो उजले रंग के सोफे भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने की तरफ कोई एक हेड आदमी भी बैठा हुआ है।